एक रोड दिख रही है और रोड पे एक स्कूटी दिखाई दे रही है कुछ ट्यू लाइट्स दिखाई दे रही है।

एक रथ यात्रा है उसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे है अ फूल की माला दिखाई दे रही है।

एक टेबल दिखाई दे रही है एक चेयर दिखाई दे रही है एक पेमेंट करने का बैनर दिखाई दे रहा है अ कुछ अ सामान दिखाई दे रहा है डिब्बों में रखा हुआ अ एक रेड कलर का बकेट दिखाई दे रहा है।